इस तस्वी इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा हैं--

इस तस्वीर इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है।

ये बाउंड्री चारों तरफ से घेरे हुए है।

नजर उतना नहीं लाइट बोत्ती जगमग-जगमग कर रहा है एक टेबुल है व्हाइट टाइप का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है इसमें--